इसके साइड में वेट लिफ्टिंग का समान रखा गया है।

जो की सिल्वर कलर का है उसके आगे एक बच्चा है जिसने रेड कलर का टी- शर्ट पहना हुआ है।

एक औरत है जो कुर्सी पर बैठी हुई है जिस कुर्सी का कलर रेड है।

दो लाल कुर्सियां लगी हुई है।

यह एक फल के दुकान का दृश्य है यहां पे बहुत से गोभियां धरे हुए हैं।

यहां पे एक ए_सी भी लगाई गई है जिसका कलर व्हाइट है।

यह एक रोड है यहा पे बहुत सारे रिक्शा गाड़ी पार हो रहे हैं ।

यह एक रोड का दृस्य है यहां पे कुछ आदमी जा रहे हैं। एक आदमी आ रहा है एक गाड़ी खड़ी है ।

यहां पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो की योगा कर रहे हैं।

इसके साइड की खिड़कियां सब खुली हुई है इन्होंने जिस कारपेट पर बैठा है उसका कलर रेड है।

यहां पे बहोत से सामान रखे गए हैंजो एक एक रेलिंग पे रखे गए हैं।

उसके साइड में कुछ लोग खड़े हैं एक आदमी ने पिंक कलर का शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है।

यहाँ मेला लगा हुआ है यहाँ पे दो आदमी है जोकि बैलून्स बेच रहे हैं।

साइड में चार कुर्सियाँ लगाई गई है जो की ब्लैक कलर की है एक कुर्सी रेड कलर की है।

यह एक पहाड़ का दृश्य है। यहा पे दो क्रेन लगे हुए है। एक क्रेन का कलर ब्लू है एक का कलर पिला है।

एक बच्चा व्हाइट कलर का फुल ड्रेस पहन कर आया है इसके साइड में एक लड़का जो खड़ा है।

साइड में एक औरत खड़ी है। जिसने वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

बहुत सारे कपड़ों को डब्बे रखे गए हैं। कुछ डब्बे रेड कलर के हैं।